सामने में एक ऑफिस नजर आ रहा है ऑफिस में बहुत सारी कुर्सी रखी हुई है बड़े-बड़े से टेबल रखे हुए हैं।

सामने में एक नदी नजर आ रही है बहोत बड़ी नदी है यहां पे नदी के किनारे पत्थर नजर आ रहे हैं कुछ छोटे पत्थर कुछ बड़े--

जो कि पढ़ रहे हैं स्टडी कर रहे हैं छत पे पंखे नजर आ रहे हैं कुछ लोग एग्जाम दे रहे हैं बच्चे बच्चों ने शर्ट का व्हाइट --

यहां पे डांस किया जा रहा है यहां पे कत्थक कर रही है दो लड़कियां उनको देखने के लिए बहोत से लोग जमां हैं।

सामने में खुलासा मैदान है मैदान में बहोत से बॉक्सेस रखे हैं ये बॉक्सेस के हैं यहां पे मधुमक्खी का--

लकड़ी का खेत बनाया हुआ हैं उसमें बाउंड्री की हुई है कुछ पेड़ पौधे लगे हुए है।

सामने में एक रूम नजर आ रहा है रिसेप्शन एरिया नजर आ रहा है यहां पे बेंच लगे हुए हैं ब्लैक कलर की कुर्सी पड़ी--

कुर्सी पर बैठ के कुछ लोग अपनी बीमारी का इंतजार करते हैं छत पे --